वो दूसरी साइड की सीढ़ी किसी और की है लेकिन इस साइड की सीढ़ी इसी मकान की है | रेस्टोरेंट की है और रेस्टोरेंट के लिए देखिये छाया की भी व्यवस्था भी है | बहुत बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है छत भी नहीं गर्माएगी इतना प्यारा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है दूर से देखते लोग तो अच्छा लगता है |

य ये जो चित्र दिख रहा है आपको ये किसी स्कूल का सीन है ये जैसे कोई इंटर कॉलेज हैे।

ये एक तालाब का सीन है कित्ता प्यारा तालाब लगा है लग रहा है एक दम भरा हुआ ।